इस वीडियो मे सड़क दिखाई दे रही है जिसके तरफ दोनों रास्ते हैं | इस सड़क पर काफी सारे ऑटो खड़े हैं

इस फोटो के अन्दर एक डेयरी बूथ दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर ब्लू कलर का बोर्ड है।

और रेड कलर से डेरी का नाम लिखा हुआ है सीसे लगे हुए हैं पोस्टर लगे हुए हैं।

सात-आठ लोग डेयरी के बाहर खड़े हुए है जो डेयरी में से सामान ले रहे है।

और सूरज की किरनें गार्डन के अन्दर पड़ रही हैं और इसमें फ्लावर्स वगैरा लगे दिखाई दे रही है।

जीनोने समान ऊपर अपने सिर पर उठा रखा है एक व्यक्ति साइकिल पर जा रहा है।

उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ है ये स्टेज पे स्टेज --

हेडफोन डाल रखा है जस्ट उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है उसने ब्लैक कलर के कपड़े पेहने हुए हैं टेबल के ऊपर कंप्यूटर दिखाई दे रहा है वो जो चल रहा है।

दो-तीन पंखे लगे हुए है और तारे साइडो पे जा रही --

जो रेड कलर के ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं | चेयर पड़ी हुई है साइड में एक वेक्ल खड़ी है बाइक --

खूब सारे फ्रूट पड़े हुए हैं अनार केला सेव संतरा कीवी और खजूर के फ्रूट --

इस वीडियो में एक रोड दिखाई दे रही है रोड के ऊपर विह्कल दिखाई दे रहे है साइकिल मोटर साइकल एक्टिवा --

एक्टिवा के सामने शॉप दिखाई दे रही है जो दो शॉप्स है उसमे बड़ी-बड़ी शॉप्स है शीशे लगे हुए है एक शॉप के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है।

इस वीडियो के अंदर एक रड उस के दोनों तरफ पिलर दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर है एक --

गार्डन दिखाई दे रहा जो खूब घना लम्बा है बहुत बड़े-बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे है सड़क के ऊपर व्यक्ति चलते हुए दिखाई दे रहे है।

लड़के ने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है ब्लैक कलर जीन्स पहन रखी है | सिर पर टोपी पहन रख --

वीडियो में एक घर दिखाई दे रहा है जो कच्ची मिट्टी का लग रहा है उसके ऊपर दो मुर्गे खड़े हुए दिखाई दे रहे है ।

एक मुर्गा एक तरफ देख रहा है दूसरा मुर्गा दूसरे तरफ दिख रहा है खूब सारे छोटे-छोटे--

उसे उस के पीछे काफी सरे भड़े - भड़े लम्बे घने वृक्ष लगे हुए हैं।

वीडियो में एक बालकनी दिखाई दे रही हैं उसके पीछे की दीवार दिखाई दे रही है ।

सात-आठ लड़के है जो बॉल के साथ खेल रहे है पीछे की तरफ जाले लगे हुए है ।

बाहर की तरफ व्हाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर ब्लू कलर का पिंगो लगा है।

इस वीडियो में एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने फौजी कलर की शर्ट और नीचे ब्लू कलर का लोअर पहना हुआ है वो --

इस वीडियो में एक टेबल दिखाई दे रही है जो क्रीम कलर की है उसकी साइड की बाउंड्री ब्लैक कलर की है।